और पत्थर वत्थर पड़े हैं ये देखो अ आदमी भी खड़े हैं।

और देखो ये साइड में पेड़ भी खड़ा है। बो बिल्डिंग भी बहोत अच्छी लग रही है और ये देखो पोस्टर भी लगा है।

और साइड में नीचे पौधे पेड़ भी रखे हुए है और बहुत खूबसूरत लग रहा है जिसने भी फोटो खींचा है बहुत अच्छ अच्छा खींचा है।